घर के लगा मशीन रखा हुआ है और लाल रंग का मशीन है। बगल में खिड़की है। खिड़की के पीछे सब गाछ उछ सब झलक रहा है। ओकरा में भी गाड़ी के चक्का लगा हुआ है। चार गो पाया है।

पीछे मे झलकता हल्का फल्का गाछ गाछ नियन। ओकरा में पीछे आगो में देखिये गा त हरा रंग का पत दिवाल उवाल झलकता है अ ओकरा बाद काला रंग का लिखा हुआ --